लो गाइस जैसा की आप यहां पे देख सकते हैं ये एक चर्च के अंदर का व्यू है। बोहोत ही प्यारा इस्टेच्यू बनाया गया है।

अगर आप साइड मे देखेंगे तो एक आदमी है जो बाइक लेके खड़ा हुआ है। उसने हेलमेट लगाना पीछे की और देखेंगे तो वहां भी आपको दो बाइक नज़र आ रही होंगी।

लो गाइस जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक रिवर का व्यू है। न् बोहोत ही प्यारा सा व्यू नेचर टाइप का व्यू लग रहा है।

हेलो गाइज जैसा के आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चर्च के बाहर का व्यू है एंड आप देखेंगे आप को सामने के यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ भी नज़र आ रहा होगा।

एण्ड आप देख सकते हैं पीछे भी आपको बहोत सारे खंभे नज़र आ रहे होंगे तार दिख रही होंगे पेड़ पौधे भी दिख रहे हों --

गाइस जैसा के आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आप को रोड का व्यू नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको बहोत सारे घांस फूस नज़र आ छोटे-छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे होगें।

हेलो गाइस जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक चर्च का व्यू है यहां पे आप देखेंगे आप को यहां पे दो बड़े-बड़े फ्लावर पॉट्स नज़र आ रहे होंगे दोनों मे ही वाइट एंड पर्पल कलर का फ्लावर दिख रहा है।

हैलो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रोड का व्यू है एंड आप सामने देख सकते हैं यहां पे आप को एक कार्यालय नज़र आ रहा है।

हेलो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रोड का व्यू है एण्ड यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे दो आपको रिक्शा नज़र आ रही होंगी।

हैलो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डेम का व्यू है एंड आप देख सकते है यहाँ पर बहोत सारे आप को नीचे रिवर पानी नज़र आ रहा होगा एंड साइड मैं देख सकते हैं आपको बहोत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हों --